एक रोड है बि पर एक साइकिल ऊ आदमी जा रयो है एक सेवन अप कोल्डड्रिंक को बैनर लाग री है।

इका मायने एक आदमी जीका का हाथ में फितो जो टाइल नाप रयो है।

एक सलून है जेको नाम सिटी सेंटर सलून जग के अंदर ऐ_सी लागरी है।

बस डिपो के अंदर बाइका खड़ी है और ये भाई कुछ जारया आरया और पास मे दुकान है।